और कुछ अनाज से भरे कट्टे दिखाई दे रहे है एक मूंगफली की ढेरी जैसी दिखाई दे रही है।

एक महिला दिखाई दे रही है जिसके हाथ में एक बच्चा है और कुछ कांच के बड़े बड़े बक्से जैसे दिखाई दे रहे हैं जिसमें कुछ मिठाई डाल रखी है।

इसके पास में कुछ अखबार जैसे दिखाई दे रहे हैं और पास में मुझे कुछ खाली कार्टून भीं दिखाई दे रहे हैं।

इस किले जैसे कुछ दिखाई दे रहा है इसके आगे कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं छोटे-छोटे पौधे जैसे दिखाई दे रहे हैं और बड़े-बड़े चट्टानों से यह बना हुआ है।

छोटे छोटे पोस्टर दिखाई दे रहे हैं जिसमें कुछ नाम भी लिखे हुए हैं पास में कुछ हरियाली जैसी दिखाई दे रही है और बड़े छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक पार्क दिखाई दे रहा है जिसके अंदर एक लोहे की बनी कुर्सी दिखाई दे रही है कुछ --

मेज दिखाई दे रही है और इसके आस पास में कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही है और कुछ लकड़ी की बनी --

गहने दिखाई दे रहे हैं और कुछ लाइटें भी दिखाई दे रही है एक पास में मुझे महिला दिखाई दे रही है।

जिसके आगे कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ मोटरसाइकिलें दिखाई दे रही है।

इसके बाहर की साइड एक पार्क दिखाई दे रहा है इसके अंदर लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

टमाटर गोभी इस तरह की वो सब्जियां बेच रहे है और इसके ऊपर मुझे एक टेंट दिखाई दे रहा है जो कुछ बोरियों का बना हुआ है।

इस रेलवे स्टेशन के पास में मुझे एक घर जैसा दिखाई दे रहा है जिसपे कुछ नाम लिखे हुए हैं नोखा --